देख के लग्णु छु कि ये नाई की दुकान होल अर निस एक बडू सी शीशा भी छ त नाई की दुकान लग्णी ये मुख्यतः।

यू एक प्रकार का भवन हम तैं दिखेणु छु यु भवन के चीजअ क च या कोई स्कूल छु ये हम तैं साफ़ पता नहीं अभी पर अग्ने कुछ महिलाएं खड़ी होया छन ज्यों मा एकक --

बगल मा एक सेफ्टी एजेंट एक टोपला पड्युं तख कुछ भारी सामान पड़ुल त येकु मुंड सुरक्षित राल।